एक एंबुलेंस खड़ी है एक सामने से ठेला खड़ा हुआ है।

यह फोटो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन का है जिसमें सामने से सीढ़ी है।

कपड़ों में जेंट्स के पहनने के लिए आ सदरी अ टंगी हुई है।

यहां कोई इमारत बन रही है जिसमें बहोत सारे बंबू बांस लगे हुए हैं।

उसके पीछे अ बादल है।

यह एक मस्जिद की फोटो है जिसका गेट नीले रंग का है दीवाले हरी है।

इसपे निशुल्क करके कुछ लिखा हुआ है हरे रंग का एक बैनर लगा हुआ है।

फोटो एक रेस्टोरेंट का है जिसमें कुर्सी और मेजे हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है जो शर्ट पहने हैं चेक वाला और जींस पहने हुए हैं।

यह किसी इमारत का फोटो है जिसमें अ गमले रखे हुए है।

ये गमले में ताड़ के पौधे लगे हैं।

अह ऊपर दीवाल अह का कुछ रंग हरे रंग का है।

इसमें कुछ अ डमी जिनको को लहंगा और चुन्नी पहनाई गई हुई है।

ये नाव पे एक लड़का खड़ा है जो लाल रंग की शर्ट और जींस पहने हुए है।

अह छोटे छोटे भी अह झुगी झो झुग्गियां जैसे पौधे लगे हुए हैं।

पीछे में लाल रंग की कुछ चित्र लगे हैं रिसेप्शन पे शीशे से बना है।

एक आदमी और है जो सफेद रंग का शर्ट पहने हुए खड़ा है।

रोड के किनारे किनारे जो बिल्डिंग्स है उनके ऊपर होर्डिग लगे हुए हैं।

यह फोटो एक वेदांता बुक वर्ल्ड की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

आं दुकान में दो आदमी हैं जो लोगों को सामान दे रहे हैं।

एक आगे की तरफ भी एक स्कूटी खड़ी है जिस पे कुछ महिला एक बच्चे को लेकर के अह साइड में खड़ी हैं।

यह फोटो किसी चौराहे का है बड़ी बड़ी सी दुकाने हैं एक कार सफेद रंग की खड़ी हुई है।

जो की बैंगनी और नारंगी कलर का दिख रहा है।

किताबें रखी गई हैं रैक बढ़िया सा दिख रहा है।